यहाँ पर एक बड़ी सी बस दिखाई दे रही है जो कि पीछे साइड झुकी हुई है।

बस के सामने एक खंभा लगा हुआ है।

और ए जो बिल्डिंग के बीच से आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ पीली-पीली--

यहाँ पर एक बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है जो की ज्वेलरी --

शॉप है इसमें बहुत सारी ज्वेलरी झूलती हुई दिखाई दे रही है।